जो पिंक कलर के हैं। कुछ ग्रीन कलर के हैं। कुछ रेड कलर के हैं।

ब्लैक कलर की उसकी नोज है और वाइट कलर की उस --

जिसका नेम रेड कलर पे लिखा हुआ है एक डॉक्टर है जिन्होंने --

एक फ्रिज फ्रीज़र रखा हुआ है। कोलगेट रखी हुई है।

पिलो रखा हुआ है जो ब्लैक कलर का है। जिस पर व्हाइट कलर के डॉट है।

कुछ येलो कलर के भी हैं और कुछ ब्लू कलर के भी हैं।

लगे हुए हैं। एक येलो कलर की बास्केट रखी हुई है। सॉस की बोतल रखी हुई है।

इसमें खाने के सिल्वर कलर के उम्म टीफ्फिंस रखे हुए हैं।

सिल वे-गोल्डेन कलर का है और यल्लो कलर का है।

और एक आंटी हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक --

वीइकल की बाइक ये है।

पर्पल कलर की शर्ट पहनी हुई है और वाइट कलर का जीन्स पहना हुआ है और जो बाइकाल है वो रेड कलर की है।

वह व्हाइट कलर का पैजामा पहना हुआ है।

पोस्टर बना हुआ है जिसमें बॉय के हेयरकट दिख रहे हैं।

भैया हैं जो बाइक से टिक कर खड़े हुए हैं। पीछे व्हाइट कलर के घर दिख रहे हैं।

ऊपर एक चद्दर का शेड लगा हुआ है जो ग्रीन कलर का डिजाइन में लगा हुआ है। एक व्हाइट कलर की --

कुछ विमेंस है। जिन्होंने शूट पहने हुए हैं। पोस्टर में हैं जो --

बगल में एक वाइट कलर का घर है जो मार्ट है वो वाइट कलर का है।